इस फोटो में एक बड़ी सी हवेली बनी हुई है।

हवेली का कलर ऑरेंज टाइप का है।

बहोत सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में पीछे साइड बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

फोटो में एक फूलों का बगीचा दिखाई दे रहा है।

इसमें छोटे छोटे फूल अलग अलग कलर के लगे हुए हैं।